गड्ढों में नाली का पानी भरा हुआ हैगा बैंक के ऊपर एक बैनर लगा हुआ हैगा बैंक का और अंदर कुछ लोग भी हैंगे।

रोड़ हेगा रोड़ पे कुछ वहाँ दिखाई दे रहे है और यह रोड़ साइड मे एक बिल्डिंग हैगी और कुछ दुकाने भी हैगी।

रोड के साइड में ये कुछ मकान और दुकाने बनी हुई दुकान के बैनर लगा हुआ है दुकान के सामने एक कार खड़ी हुए है हेगी कार नई हेगी।

यहाँ पर एक पत्थर भी रखा हुआ है हर जगह पेड़ पौधे है सब जगह हरियाली है जो की अच्छा लग रहा है देखने में बहुत --

और एक बैठने के लिए स्टूल रखा है और यहां पर यहां पर कार्पेट बिछी हुई है लाइट लगी हुई है।

यहाँ पर बेड बिछा हुआ है जिसका कलर वाइट एंड रेड है पिलो का कलर वाइट है और ग्रीन है और दीवालों का कलर क्रीम एंड कत्थई है बेड में एक बैग रखा हुआ--